यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाए दे रहा है जो की अपने इस इंची टेप से किसी चीज को नाप रहा है और यह दिवाल वगेरा छत वगेरा है जिसपे बहोत सारे पिलर वगेरा लगाई गई हैं।

यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि अपने ट्रिपॉड के साथ कुछ कर रहा है उसके दूसरी तरफ बहोत सारे चट्टानें वगैहरा लगाई गई हैं यह यह फैला रहा है और ऊपर कुछ कच्ची मकाने दिखाए दे रही हैं ।